सामने एक गेट है हरा कलर का। दो पिल्लर है वाइट कलर का।

बाहर में कपड़े टंगे हुए हैं और आदमीन लोग हैं।

और इसमें लाइट पड़ रहा है।

इसमें छे निशाना लगाने वाला रखा गया है।

यह एक फ्रीज का शॉप है।

वाशिंग मशीन भी है व्हाइट कलर का चारों तरफ से दीवाल है ऊपर में लाइट जल रहा है पोस्टर लगाया गया है।

उसके बाहर बाइक रिक्शा लगा हुआ है।

और दीवार पे हीरा भाई छा छापा गया है।

दृश्य में नीचे साइड में दो हा रूम गया हुआ है शेटर लगल है।

यह एक बैंक ऑफ इंडिया इंडियन है।

और सामने गमला भी है गमला में फूल है।

दीवार में रेड कलर का पोस्टर लगा हुआ है।

एक लाइट जल रहा है।